यहां पर मुझे कुछ टायर नजर आ रहे हैं।

कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है।

जिसे हम देखना पसंद नहीं है।

बहोत ही प्यारा लग रहा है।

इसमें महिलाओं के कपड़े मिलते हैं।

बैटरी की दुकान एक यहां पर बैटरी मिलती है।

शीशा की हमें दिखाई दे रही है।